यहां बीकानेर में कोर्ट गेट के अंदर है यहां--

यह एक आइसक्रीम मॉल पार्लर --

यह एक बार्बर यानी नाई की दुकान है जहां नाई बाल काटते हैं यह जैसलमेर की दुकान लगा रही है।

तथा अभी अभी आरती हुई है पीछे शिवजी की भी प्रतिमा है यह मंदिर छोटा है परंतु --

वहां तक़रीबन पांच पक्षी है जो बहोत ही सुंदर है दो व्हाइट है बाकी दो --

यहां का मौसम भी बहोत अच्छा लग रहा है सुहाना सुहाना--

फोटो पे आप दो तीन यहां का इंटीरियर एकदम राजशाही है तथा यह होटल कम किला ज्यादा लग रहा है।

यह आरती से पहले की फोटो है क्योंकि इसमें अभी भगवान जी को तैयार किया जा रहा।

सीढ़ियां टाइप में बन रखी है जिसपे आप आराम से चल सकते हो यहां का मौसम बड़ा ही अच्छा और सुहाना हो रखा है।